पहाड़ है पहाड़ के बीच में कुछ लिखा हुआ है चार आदमी है।

एक मोटर साइकल सभी मोटर साइकल से दोर है दो पेड़ है एक मुख्य द्वार है उसके अंदर एक समारोह है।

फील्ड मार्ट हाउस ऑफ़ बिल्डिंग मटेरियल कजरिया का--

बिजली का लाइट का खंभा है रोड पर गाड़िया चल री है कुछ बाइक्स चल री है कुछ गा कार चल रही है आसपास लोग खड़े हैं।

ये देखेने के लिए बच्चे आये हुए एक बच्चा दूसरे टीम में जा रहा है।

रेलवे स्टेशन है कोई आदमी रेलवे स्टेशन पे दिखाई नहीं दे रहा है बहोत दूर--

ऊपर व्हाइट कलर का दिवाल है नीचे व्हाइट कलर का फर्श है।

कुछ आदमी दूर बैठे हुए हैं दो चार आदमी घूम रहे एक सीढ़ी है।

एक मंदिर है मंदिर के ऊपर दो मोर बनाए हुए हैं।

महारानी जानकी कुबेर अम ध--

एक स्टेशनरी का दुकान है यहां से कुछ ग्राहक किताबें और पेन पेंसिल रेजर शार्पनर्स --

एक जगह फंक्शन शो हो रहा है जहां पे कुछ लोग सजा रहे बहोत सारी कुर्सियां रखी हुई है।

एक आदमी धोती पहना हुआ है एक आदमी बाइक चला रहा है एक आदमी स्कूटर चला रहा है एक औरत खड़ी है।